बैलून से डेकोरेशन किया गया यहां पर बहुत सारा डेकोरेशन किया गया--

यहाँ पर बहोत सारे छोटे बड़े फत्थर दिखाई दे रहें है इधर साइड में एक मंदिर दिखाई दे रहें है यहाँ पर लोग भी बहुत सारे आए हुए --

दुकान के बाहर तीन लाइट जलती हुई दिखाई दे रहीं यहां पर--

सामने शायद यहां पर घर बना बना बिल्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही हैं यहां पर काम चल रहा है।

शायद गेट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर लकड़ी से गेट का मुआवजा ले रहे हैं यहां पर एक चेयर भी रखी हुई है यहां पर दो तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं जो कि काम करते हुए दिखाई दे रहे--

यहाँ पर बहुत सारी मशीने दिखाई दे रही है ड डस्टबिन भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर --

सामने शायद ये नर्सरी है यहां पर बोहोत सारे पौधे लगे हुए दिखाई दे रे हैं जो की गुलाब के हैं गंदे के--

दिखाई दे रहे हैं शायद इंडियन ऑयल का ट्रक है।

इधर साइड में बहुत सारे वो घास भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ है।

लाइन से लगी हुई दिखाई दे रही जो की पीले कलर की बस है यहां पर--

डेकोरेशन हुआ है लाइट्स हैं यहां पर लाइट बहोत सारी लगाई हुई है।

सामने शायद ये लाइब्रेरी है कुछ यहां पर बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई दिखाई दे रही ऊपर से।